इ सैलून है इसमे सब फ़ोटो खिच रहा है बाल कटा के आया है फ़ोटो खिच रहा है।

है मच्छी बिक रहा है बगल में ड्राम है पानी का और मच्छी बाजार है।

और बहुत तरह के दु दुकान म-में दवाई रहते हैं बहुत सारा दुकान में।

और चार पाँच ठो गाड़ी लगा हुआ है और बगल में लगता है --

औउ कार है स्कूटी है। दो ठो स्कूटी है दो का दो के --

यहाँ चार-पांच चार ठो बच्चा और एक एक्सरसाइज कर रहे हैं बच्चा।

नया गाड़ी इसमे से निकलता है और अ--

और बगल मे कुचरा उ कूड़ा दानी है और लाइट --

बालू नहीं मिस्त्री भी नहीं है यहाँ पे।

और दीवाल उवाल बन रहा है । पिलर बन रेडी है और --

ये स्कूल बगेरा अ स्कूल है और यहाँ लगता है कपड़ा उपड़ा है बच्चों को बाटेंगे।

पत्थर है ये पहाड़ है पहाड़ के ऊपर देखिये घाट में मंदिर है।

अगल-बगल मे पौधा है पहाड़ पे चहढ़ चहढ़ --

और बगल मे भी-इ एक गाड़ी है उ हवा वा --